सामने एक लड़का दिख रहा है।

ड्राई फ्रूट्स हमें खाना चाहिए।

सामने दो आदमी खड़े हैं --

सामने रोड भी है रोड साफ-सुथरा है।

शामने वा इलेक्ट्रिसिटी वायर भी दिख रहे हैं।

सामने एक छोटा बच्चा खड़ा है अपनी मां के साथ।

सामने बहुत सारे फोटो फ्रेम भी दिख रहे हैं।

सामने एक मॉल है।

ट्रेट्स का मॉल है इसमें मेनस वेयर लेडीज वेयर सारे कपड़े दिए जाते हैं।

आदमी गुफा में जाने की कोशिश कर रहा है आदमी शूज पहनकर बैठा है।

सामने बड़ा सा रोड दिख रहा है।

एक ऑफिस है --

एक दरवाजा है और बहुत सारे चेयर लगाए गए हैं।

सामने बोतल भी रखे गए हैं दो तीन चार बोतल हैं।

सामने एक चाय का इस्टॉल दिख रहा है।

शामने बहुत सारे कप ड़खे के गए हैं।

फायर एक्सटिंग्यूजर भी लगा हुआ है।

हॉल में एक बड़ा सा दरवाजा है।

सामने एक आदमी न्यूज़ पेपर पढ़ रहा है।

सामने एक पोस्टल लगाया गया है पोस्टल पर शहीद भगत सिंह चौक लिखा है।

सामने एक लड़ लकड़ी का बैठने के लिए चेयर बना हुआ है।

चेयर पर दो आदमी बैठ सकते हैं।

सामने एक स्लीपर रखा गया है।

सामने बड़ा सा गेट दिख रहा है।

सामने एक पेट्रोल पंप दिख रहा है।

बिल्डिंग के बगल में एक --

सामने एक बहुत बड़ा गेट दिख रहा है।

सामने एक ग्वाभा का पेड़ लगा हुआ है पेड़ मीडियम साइज मे है।